एक मशीन लगी हुई है।

उसमें बहुत सारी लाइट लगी हुई है बहुत सारे टेबल में बहुत सारे मशीन रखे हुए है।

ये मोबिल का दुकान है जिसमे से बहुत सारी मोबिल रखी हुई है ।

इस फोटो में तीन आदमी खड़े हुए हैं जिसमें से दो लड़के हैं और एक लड़की है।

किसी का फेस नहीं दिख रहा है सबका फेस ब्ल--

उस बिल्डिंग मे बहोत सारे खिड़की दिख रहे है और वो बिल्डिंग येलो कलर का है।

ये एक पेट्रोल टंकी डीजल टंकी है।

ये बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

इसमें दो पेट्रोल और डीजल भरने की मशीनें है।

इसमें बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

एक आदमी चलते हुए जा रहा--

ये रात का समय लग रहा है।

एक पहाड़ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका फेस ढका हुआ है।

और ये रूम बहुत ही साफ सुथरा और लाइट से भरी हुई है।

ये बैंक के बाहर है।

ब्लू कलर का है एक तरफ पलस्तर नहीं हुआ है।

तीन लाइट्स लगे हुए है एक बीच में खम्बा है जो कि पिंक कलर का है।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगी हुई है।

इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे और हरी हरी घास है।

एक आदमी है जो की एक टोपी पहना है चप्पल पहना है और वो शर्ट और जींस पहना हुआ है।

उसके बाहर दो कुर्सियां लगी हुई है।

इसमें एक पेपर में लड़की की फोटो दिखाई दे रही है।

वहां पे लाइट्स लगी हुई है।